और रेलिंग के बाहर कु--

पेड़ भी दिखलाई दे रहें हैं।

और बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामान रखा हुआ नजर आ रहा है।

जिनके अंदर तरह-तरह के पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

ये एक गार्डन का चित्र हैं जहाँ पर एक बच्चा बैठा हुवा भी दिख रहा है।

आसपास घास और पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र को रोड से लिया गया है।

कुर्सी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

एक बच्चा भी खड़ा है और एक अन्टि --

चैर पर बैठी हुई नजर आ रही है।

पर कुछ पानी भी दिख रहा है और--

और सब लोग जमीद पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

लाइट के तार भीलगे दिख रहे हैं।

और कुछ लोग टीचर्स देखते हुए दिख रहे हैं।

दूर पहाड़ और खुला सा आसमान भी नजर आ रहा है।

बहुत सारी मशीनें भी नजर आ रही हैं।

और बहुत सारी चीजें रखी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र के अंदर एक आदमी पूल गेम खेलता हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक मैकेनिक की दुकान है जहां पर रैकों के अंदर बहोत सारा सामान जमा हुआ दिखाई दे रहा है।

और दूर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

चित्र रोड का चित्र है जहां पर--